इतनी टंकी रक्खी हैं। यहाँ पे येल्लो कलर झण्डे लगे हैं घर में।

रंग जमीन पे फैला हुआ है। पता नहीं तो क्या कप अ कचड़ा फैला है चिप्स का और इधर एक बिल्डिंग बनी हुई है। शीशे लगें हैं। ए.सी. लगीं हैं।

व्यू एक पार्क का है यहाँ पे दो तीन चेयर लगीं हैं। यहाँ लाइट जल रहीं है शाम का टाइम है। ऑरेंज और ग्रीन कलर में इसका इंटरफेस --